वो पंखा लेफ्ट साइड में एक लगा हुआ है।

एस_बी_आई वाला बोर्ड लगा हुआ है।

बीच में एक आदमी खड़ा हुआ है।

जिसमें तीन बेंचे दिख रही है।

दुकान के बाहर कुछ गमले रखे हैं जिसमें हरे हरे पेड़ भी लगे हुए हैं।

बहुत सारे काले और सिल्वर कलर के कुकर भी दिख रहे हैं।

बगल में भगवान हनुमान जी की मूर्ति है।

छोटा सा पोल लाल और सफेद कलर का नीचे रखा है।

जिन पुतलों ने साड़ी और सूट पहन रखी है अलग अलग कलर की।

सामने बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

दो रोशनदान ऊपर वल दिख रहे हैं।

जिसमें दो बैंचें रखी हुई हैं।

एक ए_सी और एक पंखा एक एग्जास्ट लगा है।

गेट शीशे का लगा हुआ है।

सड़क के साइड में एक बैटरी रिक्शा खड़ा हुआ है।

ये एक गेंद टाइप में रखी है।

रिवेटर नीचे आ रहा है।

जिसमें कुछ लाइट बहोत तेज चमक रही है।

फव्वारे के पीछे एक खजूर का पेड़ भी है।

बीच में गुलाब के फूल है।

ये एक कंपलेक्स है बहुत बड़ा सा--

और गुरुद्वारा चमक रहा है।

उसके आगे एक बच्चा खड़ा हुआ है।

कुछ लाल पेड़ भी हैं।

एक आदमी आगे खड़ा काउंटर पे--